ये फोटो में हमको ग्रीन कलर का टीना दिखाई दे रहे हैं।

और बीच बीच में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

बाहर में सुंदर से बैलून से डेकोरेट करके हैं।

ये कमरा का दीवार सब जो कार्ड से बना के है।

यह फोटो में हमको ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

साइड में एक स्टेडियम है और ऊपर में टीना लगा के है।

जहां में लाइट और फैन सब लगाके है।

और बहौत ज्यादा खिड़की भी बना के है घर में।

यहां में जो रेस्टोरेंट है वो थोड़ा कार्ड से बना के है।

अंदर में ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन कलर का बैलून लगा के है।

ये फोटो में हमको एक वॉल दिखाई दे रहा है जो कि कार्ड से बना के है।

सामने में ऐ_सी लगा के है।

उसके बाद जो ये जो एक दुकान है जिसमें खाने का समान सब रखें हैं।

ये फोटो में हमको एक लंबा सा ब्रिज दिखाई दे रहे हैं।

साइड साइड में बहुत ज्यादा पेड़ ये सब दिखाई दे रहे है।

ऐ फोटो हमको एक काट का कुछ बना के दिखाई दे रहे हैं।

उसके बाद उसका पीछे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग में जो खिड़की सब भी लगाके है और ऊपर में स्टार लगा के है।

ये फोटो में हमको एक ब्रिज दिखाई दे रहे ब्रिज में लोहा लगाके हैं।

वह टायर में सफेद कलर का कुछ लगा के है।

उसका पीछे में जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पोल सफेद और वायर कनेक हो के हैं।

ये जो रेस्टोरेंट है दीवार का कलर जो ग्रे है।

बस का ऊपर ही बहुत ज्यादा लोग है।

और जो ऊपर है उसमें जो बहुत ज्यादा वायर सब एक दूसरा से कनेक कनेक्ट हो के दिखाई दे रहे हैं।

ये घर का ऊपर जो टीना लगाके दिखाई दे रहे है।

यह जो हॉल है उसका कलर जो ग्रीन कलर है।

ए हॉल के अंदर बहुत ज्यादा टेबल चेयर ये सब अलग अलग डिजाइन का रखे हैं।

ये फोटो में हमको एक घर दिखाई दे रहा है।